जिसका नाम अर्बन पार्क है आस पास कुछ बहुत बड़े बड़े भरे पौधे पेड़ नजर आ रहे हैं एक पेड़ बिल--

फूल सूखा हुआ है जिस पे कोई भी पत्ती नहीं है कुछ व्यक्ति--

पास में ही एक इमारत है जो कि नीली और सफ़ेद--

इस तस्वीर में एक बैठने के लिए सोफा --

फूलों से सजावट करी गई है उसमें गुलाबी नीले फूलों का इस्तेमाल किया हुआ है नीचे रंग बिरंगा कालीन बिछा हुआ है।

बड़े बड़े पेड़ भी है पेड़ों के ऊपर कुछ रंग बिरंगे फूल भी आए हुए हैं।

यह एक बच्चों के खेलने वाला मैदान नजर आ रहा है जो की जालीदार है।

जो की जालीदार दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है।

पौधे नजर आ रहे हैं और कुछ हरी हरी घास भी नजर आ रही है।

यहां पे पत्ता गोभी बहोत ही अधिक मात्रा में--

एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ नज़र आ रहा है महिलाएं दिये लगाती हुई नजर आ रही है यहां पे एक आकृति बनी हुई है।

इस दुकान के बाहर कुछ रंग बिरंगे गमले रखे हुए हैं।

और पौधे भी बहोत ही सुंदर तरीके से लगाए हुए--

और आ रही है जीस मंदिर का नाम--

खड़ी हुई नजर आ रही है।